सामने मे भी कुछ कारे दिखाई दे रही है और कुछ बड़े-बड़े पेड़ लगे है जिसमे हरी-हरी पत्तिया दिख्ब रही है।

और एक बड़ा-सा मूर्ति बना हुआ है और कुछ बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है।

कुछ हरी-हरी घासे लगी हुई है कुछ हरे-हरे पत्ते भी दिख रहे है।

और यहा पे कुछ खाते हुए दिखाई दे रही है और दीवाल है उसमे कुछ लाइट वाला बोर्ड भी लगा हुआ है।